चित्र में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारे लोग दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे गाड़ी दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे--

चित्र में मुझे ग्राउंड एरिया दिख रहा है।

चित्र में मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे मरकरी लाइट दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है। चित्र में मुझे रोड दिख रही है।

चित्र में मुझे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं।

कुछ बच्चे नृत्य करते दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे स्टेट बैंक ए_टी_एम दिख रहा है।

चित्र में मुझे पुरुष लोअर ही पहना है।